और यहाँ पर एक बड़ा सा चिन्ह बना हुआ है प्लस यहाँ पर लड़के जो चिन्ह को पकड़े हुए हेंगे हाथों